मुझे इस पिक्चर में एक--

खाली क्लास रूम दिखाई दे रहा हैं।

खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

बहुत सारी वाइन की बोटल रखी हुई है।

पानी का मटका दिख रहा है।

बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक--

कुछ ट्रक दिखाई दे रहे थे।

मुझे इस पिक्चर मे एक हॉल दिखाई दे रहा है।

जिसमें नेट की जाली लगी हुई दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक ग्राउंड दिख रहा है।

मिठाई रखी हुई दिख रही है।